यहां पे बच्चे अपना परफॉर्मेंस कर रहे है।

नीचे शीशे की कपबोर्ड में अंगूठी वगैरा रखे हुए हैं।

साइड में एक बोर्ड भी खड़ा किया किया है जो कि ब्लैक कलर का है।

यहां पे बहोत सारे हॉस्पिटल बेड लगाए हुए हैं।

नीचे जमीन पे दो बोरे दिखाई पड़ रहे हैं जो कि वाइट कलर के हैं।

नीचे पिलर में भी दो पोस्टर चिपकाए हुए हैं।

वहां जाने के लिए बहोत सारी सीढ़ियां भी बनाई गई है।

ऊपर की ओर कुछ चिंगारियां दिखाई पड़ रही हैं।

उसके सामने एक रेड कलर का टेबल लगाया हुआ जिसके ऊपर एक डायरी रखा हुआ है।

चुन्नी टंगी तनी हुई है जो की हरे व्हाइट नीले और गुलाबी कलर के दिखाई पड़ रही है।

जिसके बाहर बहोत सारे बैलून लगाए हुए हैं।

नीचे टाइल्स लगाया हुआ जो की वाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है।

एक साइड रेड कलर के डब्बे में बहोत सारे मिनरल्स वाटर रखे हुए हैं।

पीछे की ओर बहोत सारे रंग बिरंगे पर्दे टांगे हुए--

यहां पे बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

और साइड में बांस का टाटी लगाया हुआ है।

साइड में एक मैरून और येलो कलर का पर्दा भी टंगा हुआ है।

पीछे की ओर एक साइकिल का चक्का भी नजर आ रहा है।

गेंदे का फूल का पंखुड़ी छोटा छोटा नजर आ रहा है।

उसपे वाइट कलर का कुछ चिपकाया हुआ है।

बाइक बनाने के बहुत सारे सामान रखे हैं।

यह दृश्य एक कपड़े की दोकान का है जहां पर आगे बहोत सारे स्वेटर टंगे हुए हैं।

इस दृश्य मैं बहोत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं जो की पढ़ाई कर रहे हैं।

सामने की ओर एक आदमी है जो कि कुछ समझा रहा है।

यह दृश्य एक कंप्यूटर दुकान का है यहां पे--

दो लैपटॉप और एक कंप्यूटर रखी हुई है।